एक ने प्रिंटेड शर्ट पहन रखी है एक ने प्लेन शर्ट पहन रखी है और एक ने ब्लू कलर की शर्ट पहन रखी है और ऊपर गोल्डन कलर का दुपट्टा लगा रखा है।

कुछ घर की तरफ मिसाइलें भी जला रखी हैं यहां पे बहोत भीड़ है अंदर भी बहोत सारे लोग हैं।

जो यहां यात्रियों को उतार कर चढ़ा रहे हैं यहां पे एक लड़का है जिसमें तौलिया बांध के चढ़ रहा है।

और इधर से लोग आ भी रहे हैं कुछ लोग खंबे के पास बैठे हुए हैं और कुछ लोग खड़े भी हैं।

यहां पे गुलाब भी लगा हुआ है और गुलाबी गुलाबी से फूल दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे कोई स्टाफ दिखाई नहीं दे रहा है यहां पे बहोत सारे ट्रॉफी पड़ी हुई है यह शॉप कबाड़ खाने जैसी दिखाई दे रही है।

कुछ अंदर है जो करवाना चाहते हैं और यहां पास में निगम और भी यहां पे हैं।

पास में एक चेयर भी रखी हुई है यहां पे और कोई दिखाई नहीं दे रहा है एक लोटा भी रखा हुआ है जो ब्लू कलर का है।

यहां एक ऊंट की फोटो है जिसके ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है और उसके ऊपर भी एक आदमी और बैठा हुआ है।

और यहां पे रोशनी भी दिखाई दे रही है सूरज की और ये परछाई बहोत सुंदर दिखाई दे रही है।

और पीछे लिखा हुआ भी है हैप्पी बर्थडे छोटे बच्चे का बर्थडे है और मम्मी पापा पास में खड़े हैं जो इसे केक कटवाएंगे।

यह एक लड़का खड़ा है जो पृथ्वी की फोटो को हाथ से पकड़ रखा है और यहां पे सूरज की रोशनी भी दिखाई दे रही है।

नीचे मिट्टी सी दिखाई दे रही है और बोहोत सारे पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां एक गाड़ी खड़ी है ये बड़ा सारा घर है जहां ग्रीन कलर के पर्दे हैं और ये ब्राउन कलर की --

गेट लगा हुआ है नीचे भी सीढ़ियां हुई है एक जना खड़ा है एक जना बाइक चला रहा है और एक गाड़ी भी खड़ी है।

यहां आस पास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है यह रेड कलर की है और ऊपर रेड कलर की झूमर भी लगे हुए हैं और रेड कलर के ही --

ये सारी चीज ब्रेड पनीर रसगुल्ले कतली सारी चीजें मिलती हैं यहां पे फिलहाल यहां पे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है।

यहाँ बहोत से लोग खड़े हैं बहोंत भीड़ हो रखी हैं रंगबिरंगे कपड़े पहन रखे हैं सारे मजदूर जैसे लग रहे हैं।

एक लड़की है जो सामान ले रही है और एक लड़का है जो कुछ लिख रहा है और एक औरत है जो ये सब मार सब चीजे बता रही हैं।

और ये आसपास का एरिया बहोत ही सुंदर और सुन सान सा लग रहा है रात का मौसम है कुछ भी नहीं है यहां पे कोई दिखाई नहीं दे रहा --

गुलाबी कलर की दीवार भी है मार्बल लगा हुआ है चेयर भी दूर रखी हुई है और नीचे ब्लैक कलर का भी मार्बल लगा हुआ है।